यहाँ पे गमले लाइटें काफी सारी लाइटें काफी सारी टेबलें डली हुई हैं।

यहां पर कुछ लड़के घूमने गए और नहाने गए हैं।

अगल-अगल वेरिएटी के अगल-अगल कंपनी --

इधर पर बोहोत बड़ी भीड़ लगी है। इधर एक पंडित जी और एक लड़का --

जो कि काफी बड़ा है और देखने में अच्छा लग रहा है।

पर साइकिल आइकील भी धो रहे।

यह एक जमीन है।

यहां पर लिंटर ढलने के लिए पिलर पर बल्लियां लगी हुई है।

और इधर पर ए सी वाले रूम भी मिलते हैं।

इधर पर ट्रैनिग सेण्टर । इधर पर ट्रैनिग दी जाती है। इधर पर --

बोहोत सारी लेबर है जो कि छत पर लैंटर ढाल रही हैं। गिट्टी का सीमेंट डाल रही हैं।

और इधर पर बोहोत सारे लोग बैठ कर और कुछ खड़े को कुछ दे रहे हैं और इधर पर आस-पास में --

और इधर पर बोहोत सारे रूम बने हुए हैं जिसके बाहर बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

और इधर पर होंडाओ की सर्विस होती है। इधर पर लोग बाइके खरीदने और स्कूटी खरीदने के लिए दूर-दूर से आते हैं।

यह गणेश पूजा का त्यौहार है। जहाँ पर गणेश पूजा होती है इधर पर सभी कमेटी के लोग चंदा कर-कर के इधर पर गणेश जी की मूर्ति रखे है और इधर पर लास्ट में जमीन पर --

भंडारा भी होता है और इधर लोग दूर-दूर से पूजा करने के लिए आते हैं और इधर पर सभी कमिटी के लोग --